दी गई तस्वीर में एक हाईवे है |

टीशर्ट भी पहने हुए है |

जिसके आगे से एक पुरुष पार हो रहा है और उसके बगल में एक टोटो ए --

तीन मोटरसाइकिल खड़े हैं | यहाँ एक इंसान फोन पे बाते कर रहा है |

ये तस्वीर किसी पार्क की है जहाँ पे बहोत सारे बड़े बड़े पौधे हैं।

वहाँ पे एक झुला भी है जहाँ पे एक हाथी और कुछ सीढ़िया भी लगी हुई हैं।

गमछे ओढ़ी हुई है अपने माथे में। एक ने तौलिया लपेटा हुआ है।

नदी के ऊपर जो ब्रिज है। उसके ऊपर दो गाड़िया जा रही है।